ऊपर एक खिड़की नजर आ रही सामने काफी सारे पेड़ नजर आ रहे पेड़ काफी हरे भरे दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे काफी सारे बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड व्हाइट कलर के नज़र आ रहे है। यहाँ पर कुछ पिल्लर दिखाई दे रही है। यहाँ पे काफी सारी खिड़कियां दिखाई दे रही है। यहाँ पर काफी सारी स्पेस नज़र आ रहा है।

यहाँ पे काफ़ी सारे लोग नज़र आ रहे है कुछ स्टूडंट दिखाई दे रहे है यहा पे काफ़ी सारे गमलें दिखाई दे रहे है गमलों में काफ़ी सारे फूल पौधे नज़र आ रहे है यहा एक फूल लाल कलर का दिखाई दे रहा है।